शायद नीचे लटका है वह किसी कारण वश खराब हो गया था।

और बहोत सुंदर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

घोड़े दिखाई दे रहे हैं घोड़ों की संख्या--

ग्राहकों के लिए टेबल भी डली हुई है मुझे यह ढाबा काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है तथा काफी सुंदर भी है।

हरे भरे पेड़ भी हैं तथा एक पेड़ सूखा भी है।

मुझे इस फोटो में सीढ़िया दिखाई दे रही हैं जिनको रोड के एक साइड से दूसरी साइड को जाने के लिए बनाई गई हैं।

जो गाड़ी मारुति सुजुकी है।

किताब बेच रहे है जो कॉपियों तथा किताबों का बहुत ऊंचा ढेर लगा हुआ है।

रेड कलर की हल्के रेड कलर की बस --

है जिसमें कई लोग इधर उधर टहल रहे हैं तथा शायद बस का इंतजार कर रहे हैं बस से उतरे हैं।

यह फोटो किसी ट्यूशन सेंटर या कॉलेज की क्लास का है।

सुंदर भी लग रहा यह फोटो की दीवारे सफेद रंग की है तथा जिसमें दो पंखे तथा एक--

मुझे लगता है पहाड़ के उपर का दृश्य काफी सुंदर होगा इसिलिए लोग उपर जाने के लिए बड़े ही आश्च अं ऊं उताव उत्सूक है।

मुझे यह फोटो एक रेस्टोरेंट का लग रहा है जो काफी सुंदर है तथा इस रेस्टोरेंट में काफी भीड़ भी लगी हुई है।

मुझे यह फोटो एक बड़े ही--

सा यह फोटो अच काफी अच्छा भी लग रहा है।

तथा इसमें एक पाइप भी डला हुआ है जो पानी लेने के काम आता है।

यह फोटो किसी लेंटर के डलते समय खिंच गया है जिसमें कई वर्कर्स कम कर रहे हैं।